और कॉलेजेस पूरी करने के लिए हॉस्टल है जिनकी बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है बाहर से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और गेट भी बहोत ही अच्छा बना हुआ हैं।

यह गौशाला है। उनको हमारे देश को नॉर्मली गौ माता को ले जाते हैं।

जिसकी तैयारी हो चुकी है और गार्डन भी बहोत ही प्यारा और सुंदर दिखाई दे रहा है।

बकरी गाय पानी पी रहे हैं और उसको क्रॉस कर रहे है।

यह एक चिड़ियाघर दिखाई दे रहा है एक पिंजरा हैं जिसमें--

और कुछ ए_सी पड़ा हुआ कुलर पड़ा हुआ है और कुछ मीनिंग टाइप से बहुत से चार्जर दिख रहे हैं।

पर मुझे लगता है कि यह कंप्यूटर का क्लासेस भी हो सकता है और यहां पर कंप्यूटर भी सिखाया जा सकता है।

स्कूल टाइप से या कुछ क्लासेस टाइप से दिखाई दे रहा है।

और यह शोप बहुत ही प्रोफेशनल हैं जिस वजह से इसका नाम हैं प्रोफेशनल सैलून ।

बहुत ही अच्छी बैंक दिखाई दे रही है जिसके अलग-अलग केबिन दिखाई दे रहे हैं।

वॉव यह बहुत ही प्यारी व्यवस्था है बहुत ही अच्छा गार्डन यहां पर सजाया गया है।

और मुझे लगता है कि यहं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है।

धूप में छत पर लगाए जाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है और यह बहोत ही अच्छा सोलर सिस्टम है।